बिल्डिंग के बाहर कुछ गमले हैं जिनमें पौधे लगे हुए हैं साइड वाली बिल्डिंग --

खड़ी हुईं हैं अंदर सुखदेव पैलेस ब्लैक --

महानंद डेरी पार्लर लिखा हुआ है और साइड में एक लड़का --

सामने एक ग्रीन कलर की नेट बंधी हुई है जिसकी उस साइड --

एक स्विमिंग पूल दिख रहा है जिसमें बहुत सारे बच्चे नहा रहे हैं।

और कुछ किनारों पर खड़े हुए हैं पानी का कलर नीला है और चारों ओर--

और दूर ऊँटों ईंटों के और ढेर है और दूर दूर बिल्डिंग दिख रही हैं जो --

सामने एक लड़का झूले पर बैठा हुआ है जिसमें ऊपर का पाय --